यहाँ सामने ही एक बाइ कार दिख रही है| कार के आस-पास कुछ लोग हैं|

उनके बीच मे बहुत सारी भीड़ है आस-पास बहुत सारी दुकाने दिख पड़ रही है यहाँ--

यह किराने की स्टोर है यहां पर बहोत सारे कट्टे रखे है।

उन कट्टो में अन्य अन्य प्रकार के सामान है यहां पर चार ग्राहक खड़े है जो समान लेने के लिए उपस्थित हुए है।

यहाँ पर कुछ गाटरों के साथ-साथ मट्टी के खुदाई का कार्य भी चल रहा है| इसके आस-पास कुछ घास भी दिखाई दे--

यह एक दुकान दिखाई दे रही है इस दुकान में बहुत सुंदर सुंदर गुड़िया दिखाई दे रही हैं।

और इसके आस-पास घाँसें भी दिखाई दे रही है | ऊपर से एक बिजली की लेएन जा रही है | मालगाड़ी खडी हुई है।